बहुत सारा लाइट वगैरा लगाया गया है।

पीछे तरफ पेड़ बहुत बड़ा है।

और एक आदमी इधर से टैंपू के पास खड़ा है।

ये बा एक बहुत बड़ा गेट है जो कि गेट हरा कलर से रंगा हुआ है।

और एक लेडिस बाहर होकर खड़ा होकर देख रहा है उसके हाथ में दो बोतल एक पर्स लिया हुआ है।

और आगे में दो तीन सोफा लगाया हुआ है।

सामने में एक लेडिस बैठकर कुछ काम कर रहे हैं।

एक बहुत अच्छा रूम है जिसमें कचरा फेंकने वाला डिब्बा रखा हुआ है और एक सूटकेस भी है।

और एक टेबल पर पानी का बोतल और गिलास रखा हुआ है और एक कुर्सी भी है।